काला कलर ओ लकड़ी के बोस हई।

जेंट्स है बैग है बॉटल्स है डब्बास है।

राउंड के अंब्रेला के टाइप राउंड डिज़ाइन है ब्लू कलर है आदमी मिलकर के अभी देखता है ए और एक आदमी फ्लावर्स --

येलो का डिश है येलो गेट्स हैं दूसरे साइड बड़े बिल्डिंगस हैं।

ग्रीन कलर डबा है एक आदमी मिलकर कैप डाले को छत डाले को फैन डाले को--

ऊपर से ऊपर साइड और रेड कलर बॉक्स --

पिज्जा के पिक बोर्ड मे देखता हूं एक आदमी बोर्ड पार्सल मिल कर गया भी देखता है आ है।

एटम है बैग्स है काफी शोटटा शोटटा आशा है।

यहां भी रोड है रोड के पास साइकिल है ऑटो है कार है।